शादी का पंडाल है चारों तरफ कुर्सी टेबल लगा हुआ है लगा हुआ है रंग-बीरांग का बत्ती जल रहा है।

फूल है गमला है खंबा है कुर्सी टेबल सब लगा हुआ है बैलून से घर सजा हुआ है लाल पीला हरा सभी रंग का बैलून लगा --

संगीत का घर है। वहां सभी लोग संगीत सीख रहा है। कोई ढोलक बजा रहा है कोई सितार बजाना चाह रहा है। एक औरत है पांच जेंट्स है सभी बैठके बाजा बजा रहे है।